ये बहुत अच्छे हैं सिर्फ और टेबल उधर थोड़ा करते तो और अच्छे लगते वो वो भी अच्छे हैं फैन भी बहुत अच्छे हैं ये फूल बहुत अच्छे लगते हैं देखने में।